यहा पर एक पेड़ है पेड़ के नीचे दो लड़के लोग बटहे हुए हैं एक मोबाइल देख रहा है।

साइकिल्स रखी हुई है और जिसमे एक अ ट्राय एक लड़का ट्राय कर रहा है चलाने की कोशिश कर रहा है उस पर दूसरे बैठे हुए हैं एक देख रहे हैं।

यहाँ पर एक र अं टू वे रोड है वो वो जहाँ जो कि एक तालाब के ऊपर या नदी के ऊपर ब्रिज टाइप का बना हुआ है उस पर से रोड गई हुई है।